यहाँ पर एक केवारी लगा है। केवारी के नीचे में एक रस्सी है। रस्सी के नीचे में कुछ लकड़ी के छोटे-छोटे टुकड़े हैं।